ये एक ठेला है। ठेला में फल है। संतरा अनार आम और क्या-क्या है। एक इसमें कैरट भी है। कैरट में फलो है। ई ठो गाड़ी दिखाई दे रहा है।

इसमें रेड कलर का दरवाजा लगा हुआ है लिखा हुआ है इसमें जिला प्रसिद्ब डीग डाक इसमें लिखा हुआ है। दीवार-उवार है और बॉल बत्ती इसमें लगा हुआ है है एक ठो मैदान है।

यहाँ पे एक बहोत बड़ा मंदिर है। उसमें बहोत सजावट है और बुद्ध मूर्ति का भगवान है। उसमें गोल्डन कलर का मूर्ति है देखने में बहोत सुन्दर लग रहा है और बहोत अच्छा मैदान है। साइड में बल्ब बत्ती भी लगा हुआ है। इतना सजावट है की देखने में मन खुश हो जाएगा।

और पानी भी बहुत अच्छा चमक रहा है।

और टेम्पु भी चलता है यहाँ पे। एक ठो टेम्पू रुका हुआ है और यहाँ पे चार ती चक्का है। एक ठो आगे में है।